और कुछ व्यक्ति वहाँ एटीएम में जाते। एटीएम से हम पैसे निकालते। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटो म ऑटो टेलर मशीन है। ऑटोमैटिक टेलर मशीन है।

यहाँ छठ की पूजा हो रही है सुबह सुबह और ये बहुत बड़ा समुद्र हैं यहाँ पर और यहाँ पर गन्ने की और बहुत सारी चीजो को रख कर पूजा की जा रही है बहुत सी महिलाएं एकत्रित हुई हैं।

यह एक बहुत बड़ी गाडियाँ खड़ी है| यहाँ पर बहुत कुछ है और देखने के लिए बहुत अद्भुत और अच्छा है| ये--

दुर्गा माता का मंदिर है जहां पर बहोत सारे गुबारे हैं। पंडाल सजा हुआ है। दुर्गा माता का मंदिर है पीछे चकरी है कई व्यक्ति बैठे हुए है और साम पीछे लैपटॉप भी रखा हुआ है।

मछ्वारा बैठा है जो मछली बेच रहा है जो सुबह से शाम तक लेकर बेठा रहता है और इनको काटते हैं उनकी आँखे निकालते हैं कांटे निकालते हैं तब इनको बेचते हैं।

यहाँं पर कुछ महिलायें हैं जो अ सील सी-सिलने वाल काम कुछ कर रही हैं कुछ यहाँं पर बर्तन रखे हुए हैं और कोई व्यक्ति हिसाब कर रहा है एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है।